ओर सामने मे टेबल भी है ऊपर मे लाइट स लगे हुवे है ओर ये स्टेज है ओर बगल मे पर्दा लगाया हुवा है खंबा है ओर पीछे मे पेपर है।

ओर बीच मे कुरसिया रखी हुई है ओर नीचे से सीडी बनाई गई है चड़ने के लिए ओर बगल मे एक कार है और कुछ लोग है ओर पेड़ पोधे है काफी सुंदर दिख रहा है।

ये में गेट है जिस के के बहार घड़ी लगायी हुई है जिस में की सात दस बजके पचीस तेस मिनट हो रहा है दस बजके तेस मिनट हो रहा है ।

और उस निचे में दरवाजा जो है | वो खुला हुवा है अन्दर में कुछ लोग है बहार में टेबूल मे कुच्व्ह प्लास्टिक में रखा हुवा है ।

और नीचे नीचे किया गया है ऊपर पेड़ पौधे है और नीचे मे पुष्पति लड़का हुई है और सामने में कोई नही दिख रहा है।

ये देखने म इ सुन्दर लग रहा है| ये घर है पिब्क कलर का और निचे गेट है और सामने में कार भी है नार अगल बगल में पोधा है और ऊपर आसमान खली हे |

और यहा पर ऐ सी का टोस्टर बहार लग हुवा है और खिडकिय खुली हें और कुछ बंध है।

उसके पीछे वाईट कलर के माकन है और रास्ते पे कुछ लगा हुवा ह फुल पेड़ पोधे लगे हुऐ है और एक आदमी भी बाइक से क्रोस कर रहा है--